यहां पे आप देख सकते हो--

और यहां पे एक आदमी बाइक पर है।

यहां पे आप देख सकते हो ये पारक है।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

और इस आदमी ने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे है और यहां पे ये पैडी भी दिख रही है।

यहां पे आप देख सकते हो लक्ष्मी ज्वेलर्स लिखा हुआ है।

लाइट ही लाइट लगी हुई हैं यहां पे एल_सी_डी भी लगी हुई हैं।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

बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

झूले भी दिख रहे हैं और ये बच्चे बैठे हुए हैं।

ये यहां पे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही है।

यहां पर आप देख सकते हो यहां पर गुब्बारे लगे हुए हैं।